फूल से फूल लगाने पर वो बाद मे जब फूलाता है तो देखने में अच्छा लगता है।

बोर्ड टंगा हुआ है । ऊपर से लेकर नीचे तक चुकभुकिया गिराया हुआ है । गुड़िया में जो है कपड़ा पहनाया हुआ है । एक मोटरसाइकिल वाला आदमी मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हैं । बगल में भी एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है ।